और उसके अंदर तीन चार चीज खाने की है।

जैसे के टमाटर दिख रहा है नींबू दिख रहा है पनीर का क्यूब दिख रहा है और दो चीज दिख रही है।

और बहोत सारी ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की।

और पूरा फ्लावर से सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

कंपनी के अंदर कुछ काम चल रहा है ऐसा लग रहा--

जिम के अंदर सब अअ जिम वगैरह कर रहे हैं।

और पत्थर के अंदर दो इंसान दब चुके उनके ऊपर पत्थर है।

और वहां पे कुछ मार्बल के ऐसा कुछ पढ़ रहे है ऐसा लग रहा है।

और एक लाइट जल रही है टेंपल के अंदर--

यहां पे कुछ कुछ बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

और उसके पास में एक मुझे पेड़ भीं दिख रहा हैं।

और एक बंदा प्लेट ले जा रहा हो या पकड रहा हो ऐसा के लग रहा है।

बैंक के ऊपर गांधीनगर ब्रांच ऐसा कुछ लिखा हुआ है।

और वहां पे पूरी लाइटिंग से बस शेड सजा हुआ है।

और ए दो एक एक कपल वहां पे बैठे हुए हैं।

एक लेटा हुआ है मिट्टी पर एक बैठा है और एक उसका फोन यूज करता है।